दो साइड में पेट्रोल पंप का लगे हुए हैं बड़े-बड़े बॉक्स जिसमें से पेट्रोल है रहता है उस पेट्रोल से दो दो--

छोटा सा बैन है उसमें पेट्रोल डाल रहा है एक लेडीज है जो--

ये एक शॉप है जहां पे सिंघाड़ा समोसा बड़े पाव छाने जा रहे हैं और बेचे जाते है इडली वीडली भी बेची जाती है शॉप है स्वीट की शॉप --

ये एक फूलों की शॉप है जहां पे आर्टिफिशियल फूल्स मिलते हैं वहां पे बहुत डिजाइन डिजाइन फूल्स हैं।

ये एक शादी का डेकोरेशन है यहां पे शादी के लिए बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है रिसेप्शन --

आज के लगाया गया है डोर गुलाब है बहुत सारे सामान रखे हुए हैं डोर के--

एक आदमी जो गाड़ी को चला रहा है पुलिस के सी_आर_पी_एफ के एक आदमी है बहोत सारे लोग हैं जो आसपास में भीड़ जमा करके इकट्ठा होके खड़े हैं।

ये एक पार्लर है पार्लर में एक लड़की बैठी है जिसके कपड़ों पे बालों पे बहुत अच्छे-अच्छे डिजाइन किए गए बहुत--

फूल एक लाइन से लगाए गए है और उसमें बहोत सारे फूल्स है और उन फूलों की बहोत लोग है जो देख रेख कर रहे--

बहुत बच्चे जो उनके अंदर में फोटोस ले रहे एक लड़का है जो कमर पे हाथ--

एक रखे गए बहोत सारे कैमरा लगे हुए लाइट्स है बहोत सारी चेयर्स है।

यहां पे बहोत सारे लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। बहोत से लोग अंदर में खड़े हैं पोल है बाहर में गाय है वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक का डब्ब बॉक्स है।

बहुत से लोग हैं जो आसपास से आना जाना कर रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं--

फूल जो वाइट बैंगनी गुलाबी और दीवालों पर भी बहुत सारे फूल के पेड़ लटके हुए हैं।

ये किया हुआ प्लास्टिक में पैक करके छोटे छोटे पर्स है बैग है टिफिन है।

मार्केट बाहर में कुछ सामान कपड़े बिछा के सूट बेच रहा है बहुत से लोग--

ये एक बुक स्टोल है जहां पे बहुत सारी बुक रखी गई है छोटे-छोटे कंटेनर बना के छोटे-छोटे बुक्स पतली बुक्स मोटी किताबें गाइड्स रखी गई हैं।

ये एक रोड साइड व्यू है जहां पे सूरज ढ--

बहोत सारी पोल ही पोल में दो-दो लाइटे लगी हुई बड़ा सा तार है।

एक बड़ा सा टावर है लगा हुआ जिससे तारे कनेक्टेड --